स्वच्छ भारत के लिए बोर्ड लगा हुआ है एक व्यक्ति है जो तालाब में जा रहा है और एक महिला खड़ी है।

एक पोल है दो तार है और अदर अदर चीज़ है इसमें।